पिलर भी खड़े हैं आ कुछ बच्चे खेल रहे हैं और वाटर पार्क में जो पानी भरा हुआ है उसका कलर ग्रीन हो रहा है।

यहां बहोत सारी कुर्सियां भी पढ़ी हुईं है।

उसमें एक रैक भी पड़ी हुई है और एक अलग से बिजली का बोर्ड भी दिखाई दे रहा है।

दो आदमी भी बैठे हैं।

उन्होंने ब्लैक कलर के कपड़े पहन रखे हैं नीचे पत्थर भी पड़े हुए हैं और आसमान का कलर नीला दिख रहा है।

और बहुत सारे केबल भी टंग रहे हैं।

उसी के पीछे एक जिराफ का पोस्टर लगा हुआ है उसी के साइड में एक बोर्ड भी लगा हुआ है।

यह एक योगा सिखाने की जगह दिख रही है यहां बहोत सारी मैटे रखी हुई है जिनके अलग अलग कलर है।

जैसे की रेड कलर ब्लू कलर ब्लैक कलर और पर्पल कलर ।

पास में ही दो कुर्सियां पड़ी है जिनका कलर लाल है उसी के पीछे एक टेबल पड़ी हुई है जिसका कलर व्हाइट है और उसपे एक टेब मे--

और उनके कवर और नीचे ग्लब्स भी रखे हुए हैं।

बस पीछे ही बहुत सारी दुकान भी दिख रही है जिनपे और भी गाड़ी खड़ी है।

इसमें दो होल्डर दिख रहे हैं इसमें एक बल्ब लगा हुआ है वो जल रहा है।

चोटकी टेबल के ऊपर रखी हुई है और एक मशीन भी रखी है।

दुकान के बाहर हरे रंग का पेंट हो रखा है।

बैंक के ऊपर दो ऐसी भी दिख रही है।

उसके एक साइड में दो खजूर के बड़े बड़े खड़े हैं।

और शाम का समय है सूरज छिपने को जा रहा हैं।

और दूर दूर में छोटे छोटे पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

यह एक दुकान दिखाई दे रही हैं।

एक आदमी ए_टी_एम से बाहर आ रहा है जिसने ग्रीन कलर की टी शर्ट पहन रखी है।

पास में एक गाड़ी भी खड़ी हुई दिख रही है।

पास में एक ब्लैक कलर का घर भी दिख रहा है।

और सामने एक भगवान जी की फोटो भी लग रही है।

यहां कुछ आदमी चुनाई का काम कर रहे हैं।

और एक आदमी के हाथ में ग्लब्स पहन रखे है।

सामने एक गन की दुकान है जो कि सुरेंद्र गन हाउस --

और सामने धिमनपुरा शामली भी लिखा हुआ है।

सामने एक आदमी भी दिख रहा है जिसने रेड कलर के कपड़े पहन रखी है।

और व्हाइट ही कलर का एक टैंक रखा हुआ है पास में ही इसकी छतरी भी है।

और कुछ बहुत सारे छोटे छोटे पेड़ भी खड़े हुए हैं सामने एक वॉशरूम भी दिख रहा हैं जिसमें दो सिंक खड़ी हुई हैं और दो मिरर भी लगे हुए है।

स्टैंड भी लोहे का बना हुआ है दुकान में जो अंदर कलर वो हल्का पीला कलर है।

सामने ही दो शीशे भी दिख रहे है।

उसी के सामने एक आदमी बैठा हुआ है और एक टेबल पड़ी हुई है।

टेबल पर बहुत सारा सामान रखा हुआ है उसके पीछे इलेक्ट्रिक बोर्ड भी लगा--

यहां तीन आदमी बैठे हैं और चार आदमी खड़े हैं।

पर्दे भी लगे हुए हैं और एक घड़ी भी है।

यहां बहुत सारी गाड़ियां भी खड़ी हैं।

यहां एक पास में ही दुकान दिख रही है।

कुर्सी के नीचे एक डस्टबिन भी रखा हुआ है।

सामने एक लकड़ी की दुकान है जिसमें बहोत सारे लकड़ी की बने हुए गेट और चौखट रखी हुई है।

यहाँ बहुत सारे तार भी पड़े हुए हैं।

और नीचे कुछ प्लास्टर रहा है।

और जो दुकान में जो कलर है वो ऑरेंज कलर का हो रहा है।

पीछे बहुत सारी टाइल्स भी लगी हुई हैं टाइल्स का कलर सफेद है।